कुछ लोग स्टा स्टेज पर हेंगे और बाहर के साइड दो पर्दे डले हुए हैं और पर्दों के बाहर एक मोर खड़ी हुई है जो व्हाइट कलर की है उसके पिंक कलर के फूल है--

मंजन ब्रुश तेल साबुन काफी सारी शीशियाँ डिब्बे बॉटल वगैरह रखी हुई हैं पैकेट रखे हुए हैं यहाँ पर और काफी सारा सामान भी रखा है यहाँ ।

पर जंगल है हरी-भरी घास है छोटी-छोटी सी और कुछ बड़े पत्ते भी है यहां पर| यहां पर एक चिड़िया बैठी हुई है।

और भी कई कलर की है और उसमें हैंडल लगा हुआ है आगे एक बड़ी सी लाइट लगी हुई है| सामने भी एक बाइक खड़ी हुई है जो रेड कलर की है और उसके साथ--

और इसके इसका कलर रेड है और इसकी सीटे व्हाइट कलर की है इसके पीछे एक पहिया भी टांगा हुआ है एक टायर आगे एक लड़का --